यह चित्र कहीं पहाड़ी क्षेत्र का है यहां पर चारों साइड हरियाली ही हरियाली है बीच में नदी है दीवारों से घिरा हुआ है।

रोड केऊपर बढ़िया सफेद सफेद चित्रण लगा हुआ है दीवाल में काई छपी हुई।

यह चित्र एक टावर का है टावर कई फीट ऊंचा है टावर में तीन बी_टी_एस लगाए हुए हैं।

दुकान के बाहर सीढ़ियां लगी हुई हैं साइड में और भी बहुत सारे चीजें हैं।

यह एक स्टेशनरी मार्ट की दुकान है फ्रंट ग्लास में स्टेशनरी मार्ट लिखा है लेफ्ट साइड फोटोकॉपी लिखा हुआ है।

दुकान के अंदर एक नीली कलर की टेबल रखी हुई है दुकान के कांच का एलुमिनियम सेक्शन से काम किया गया है।

यहां पर स्टेशनरी मार्ट का पूरा आइटम एक से एक बढ़कर एक मिलते हैं।

मैरून कलर के पाइप लगी हुई है दोनों पाइप के पीछे एक बाइक खड़ी हुई है यह पार्क का नजारा है नीचे हरी-हरी भरी घास भी छपी हुई है।

कैफे में तीन प्रकार की टेबल लगी हुई है कई प्रकार की कुर्सियां रखी हुई हैं दीवार में चार फोटो लगी हुई है चारों--

ये से गोल माला आकार में कुछ सजाया हुआ है यह कॉस्मेटिक शॉप बहुत जोर जोरदार है।

चारों साइड पर्दे लगे हुए हैं ऊपर नीला आसमान टाइप कलर शो हो रहा है।

यह तीन मंजिला युक्त एक भवन जिस पर नीचे दुकान है दुकान के बाहर एक आदमी की फोटो लगी हुई है दुकान के बाहर--

एक आदमी बाइक पे बैठा हुआ है जो सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

दाहिने अ साइड अ में कार खड़ी हुई है बाएं साइड में एक लड़कों की फोटो लगी हुई है जिसमें दो लड़के ऊपर आपस में खड़े दिख रहे हैं।

फोटो में रंग बिरंगे कलर के कपड़े पहने हुए आदमी खड़े हुए हैं यह ब्रिज नुमा फोटो शो हो रही है ब्रिज के पास की जैसे हो--

यह चार पिलर से युक्त है और इसमें ऊपर लाइटें लगी हुई हैं झंडे लगे हुए हैं।

ऊपर सफेद आसमान है फर्श में नीचे मैड बिछी हुई है एक लड़का और लड़की फर्श में बैठे हैं।

इस कमरे की खास बात है कि दीवार में लाल कलर का पेंट लगा हुआ है लाल कलर के पेंट के ऊपर एडजस्ट फैन लगा हुआ है।

इस सब्जीकी दुकान में बहुत प्रकार की सब्जियां है जैसे भटा है टमाटर है गाजर है खीरा है अदरक है धनिया पत्ती है।

अलग-अलग डब्बे बनाए गए हैं अलग-अलग डब्बों में सारी सब्जियां सुरक्षित तरीके से रखी हुई है।

इस ग्राउंड में तीन प्रकार की टेबल लगाई गई है एक टेबल ऊंची है दो टेबल गोल्डन कलर की है एक--

टेबल रेड कलर की है रेड कलर की टेबल के ऊपर कंडील रखी हुई है।

पीछे बैकग्राउंड में पेड़ है बिल्डिंग है नीचे फर्श पे मैट बिछी हुई है किनारे किनारे हरी भरी घासे छपी हुई हैं यह सुंदर सा चित्र है।

मेन गेट से अंदर जाने का रास्ता है और भी सुंदर आइटम है।

ने हाथों से काम कर रहा है लड़के के बाल सफेद हैं लड़का गोरा नारा है राइट हाथ में कुछ पकड़ा हुआ।

अ हम सीढ़ी से चढ़कर दुकान में जाएंगे दुकान के पीछे हरे बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

इस ब्यूटी पार्लर में एक सुंदर चित्र बनाया गया है सामने मोबाइल रखा हुआ है।

मोबाइल में अठारह सौ सत्तर नाम का एक फोटो शो हो रहा है।

इसकमरे में दो कंप्यूटर दिख रहे हैं दोनों कंप्यूटर ऑन है कंप्यूटर के ऊपर वाईफाई का बॉक्स लगा हुआ है।

एक क्रीम कलर की टेबल है एक ब्लैक कलर की टेबल है बीच में डस्टबीन रखी हुई है।

मंदिर में ऊपर गुंबज है मंदिर के पीछे एक सेड लगा हुआ भवन बना है।

चित्र दिख रहे हैं जो अभी समझ में नहीं आ रहे हैं एक पेड़ नुमा आकृति भी दिख रही है।

ट्रैक्टर के ऊपर इंजन का दृश्य जो साइलेंसर को दिखा रहा हैं।

एक पिंक कलर की चटाई में है एक सफेद कलर की चटाई में एक नीली कलर की चटाई में है सामने मिरर है।

व्यक्ति सफेद कलर का कपड़ा पहना है नीचे जींस पहना है फर्श में मैट बिछी है।

किनारे साइड सड़क बनी हुई है आने जाने के लिए ऊपर नीला नीला आसमान है।

शोकेस बनाया गया है जिस पर सोफे का चित्र बना हुआ है नीचे साइड अ अ शटर लगा हुआ है ऊपर साइड पिलर लगे हुए हैं।

नीचे फर्श बना हुआ है पेट्रोल टंकी के सेट के सामने हरे भरे पेड़ हैं किनारे साइड बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग में कांच लगी हुई है।

इस भवन के बाहर एक पार्क बनाया गया है पार्क के बीच में एक सेंटा टेबल रखी हुई है सफेद कलर की।

किनारे साइड रोड बनी हुई है रोड के ऊपर सफेद कलर का क्रॉस बनाया गया है।

तालाब के किनारे बहुत सारे लोग टहल रहे हैं ऊपर तिरंगा झंडा दिख रहा है जो तीन कलर में दिख रहा है।

एकतरफ में ऊपर बैनर में रानी लक्ष्मीबाई लिखा हुआ है एक साइड अ बाइक खड़ी हुई है।

नीचे फर्श में हरी-हरी कुछ घांसे दिख रही हैं एक तरफ पानी भी दिख रहा है ऊपर नीला आसमान पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

नीचे बहुत सुंदर सा एक फूलों का किनारा भी दिख रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर नीले कलर के बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है किनारे तरफ में खिड़की बनी हुई है।